वह कुछ इनके भक्तजन दिखाई दे रहे हैं।

यहां नी की मेडिकल सदस्य नजर आ रही है जिन्होंने सफेद कपड़े पेहने है।